यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं लाइट्स दिखाई दे रही है।

और बहुत से पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है।

बहोत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ साइकिल दिखाई दे रही है और--

और सब योगा करते हुए दिख रहे हैं।

और कुछ मैट्स दिखाई दे रहे हैं और--

बैनर्स लगे हुए दिख रहे हैं और--

जहां पर ताजा मीट शॉप लिखा हुआ है।